चार फ्लोर मंजिल बनी हुई है वहाँ पे बहुत सारे पेड़े भी है वहाँ पे कुछ लोग भी ब दिखा रहे है मगर उसके मेल बोलते है ना।

--और वहाँ पर बहुत सारी सब्जी भी दिख रही है जैसे बंदगोभी है टमाटर भी दिख रहे हैं मूली भी दिख रही है गाजर भी दिख रही है और बैगन भी यहाँ पर नजर आ--

बहुत सारी ट्रे भी रखी है उसमे बहुत सारा अनार भी रखा हुआ है बहुत सारा संतरा भी रखा हुआ है बहुत सारा सेब भी रखा हुआ है बहुत सारा अमरूद भी रखा हुआ है वहाँ पर बहुत सारी फूल--

रोहित बिलासपुर गर्ल्स पी_जी कॉलेज बलासपुर लग रहा है वहाँ पर कुछ मतलब दो मेल भी खड़ी हुई है वहाँ पर कुछ एक फीमेल भी खड़े।

फिर फिर से भी तालाब दिख रहा है जो पुराने जमाने का तालाब है पुराने लोग इस तालाब को बहोत साल हो चुकी हुई हो ऐसा तालाब लग रहा है इस तालाब मे बहोत सारे पेड़ भी है इसमे वो पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही है।